यहां नदी बनी हुई है जिसमें काफी सारा पानी भरा हुआ है। आसपास घास ही घास है हरे रंग की। छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं पानी में।

यह बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर तक जा रही है। आगे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है सीढ़ियों के बगल से छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं और कुछ सुखी पत्तियां पड़ी हुई है।

यहाँं एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें एक दीवाल भी दिखाई दे रही है और बहुत बड़े-बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक झंडा भी टाँग रहा है और आगे चल कर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

झरने का आनंद ले रहे हैं पीछे पेड़ पौधे हैं जो कि हरियाली दे रहे है।

ये रेलवे स्टेशन की रेल की पटरियां है जो कि अभी खाली पड़ी हुई है आसपास बहुत ही सफाई है।

पीछे बहोत बड़े-बड़े पेड़ हैं और पौधे लग रहे है। सड़क बहोत ही चौड़ी है।

आदमी के पास एक इंची टेप है।

और थोड़ा कू पानी भी दिखाई दे रहा है लेकिन कोई व्यक्ति आ जा नहीं रहा है।

और एक जूता भी रखा है। पीछे कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।